जयमाला है। जयमाला बनाया गया है। जिसमें वरमाला उसे बोला जाता है।

होगा जो कि कलर मुस्लिमों का ही होता है। ऐसा डिज़ाइन भी मुस्लिमों का ही होता है और ब्लैक कुर्ता-पजामा सब --

यह फुल कॉपी बोर्ड लगा हुआ उसका फोटो है यहाँ पर एक दुकान और ये दुकान --